है जो पिंजरा में बंद है। और शेर का आँख खुला हुआ है।

एक माला का दुकान है जिस पर कमल का फूल नजर आ रहा है माल बहुत अच्छा है।

बहुत सारा पेड़ लगा हुआ है पार्क टाइप का बना हुआ है जिसपर लोग बैठ सके।

तरह-तरह का फुल जो है नीचे गिरा हुआ है देखने में काफी अच्छा लग रहा है तरह-तरह का पेड़ है।

और देखने में बोहोत अच्छा नजारा लग रहा है।

और काफी ज्यादा संख्या में लीची नजर आ रहा है जो रेड कलर का है पत्ता इसका हरा कलर में नजर आ --

एक लड़की है जो डांस करने के लिए स्टेज पे खड़ी है।

और वो डांस करने के अंदाज में खड़ी है लड़की।